जो बहोत सारे पैसे भी रखे हुए हैं।

अलमारी को ल सिमिट एवं छड़ी से बनाया गया है।

उस टेबल के ऊपर चादर भी बिछाया गया है।

और यहां पे बहोत सारे आलमारी भी बनाए गए हैं।

जिस कार का कलर व्हाइट एवं ब्लैक है।

और यहां पे बहुत सारे चेयर भी लगे गए हैं।

एक गार्डेन का दृश्य है जहां पर बहोत सारे फूल नजर आ रहे हैं।

तथा यहां पे छोटे छोटे कंकड भी हैं।